एसो बच्चों को पढ़ा रहे समझा रहे हैं वो बच्चे जो की खड़ी हुई है।

ए है यह पार्किंग है और जो रोड है ब्लैक कलर का उसे आदमी शायद अ कर रहे है ।

ऑटो वर्कशॉप है जो गाड़ी कि यहाँ पर धुलईया होती है या पेंटिंग होती है कार जो है ब्लैक कलर का है ।

आसमान स्काई_ स्काई है और रस्ते हैं और--